तीन लड़के दौड़ते हुए दिखाई दे रहे है।

एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान--

जो हाथ मे कुछ समान लिए हुए दिखाई दे रहे हैं।

आस-पास मैदान में हल्की-हल्की घाँस दिखाई दे रही है।

जमीन में खास दिखाई दे रही है।

कुछ लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे है सामने पहाड़ दिखाई दे रहे है।

खिड़की बनी हुई दिखाई दे रहीं है पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक मकान दिखाई दे रहा है मकान में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवार पर एक पंजीयन का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ मिट्टी पत्थर डले हुए दिखाई--

किनारे पर कुछ मिट्टी पत्थर डलें हुए दिखाई दे रही हैं।

दुकान के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

मंदिर का दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है साइड में एक खम्भा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरंट के अंदर कुछ पोस्टर चिपकी हुई दिखाई दे रहे है तीन खिड़कियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक पुरानी इमारत बनी हुई दिखाई दे रही है जिसके बाहर बहुत सारी सीढ़ी लगी दिखाई दे रही है।